यहाँ पे ब्रिज बना हुवा है जिसमे लाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे रोड है और रोड के दो अ रोड पे दो एक लड़की और एक लड़का चल रहा है।

और यहाँ पे कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे बोहोत सारे लड़के जो पीछे बेग टांगे हुवे हैं।

कुछ गोल्डन कलर के कुछ वाइट कलर के और यहाँ पे कुछ लेडीजें दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पे स्काई ब्लू और आ वाइट कलर से डेकोरेट है पूरा।

यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पहाड़ियाँ बनी हुवी है बहोत सारी पहाड़ियाँ जिसमें ग्रीन घास लगी हुई है।

और यहाँ पे अ-अ पूरे में हरी-हरी घांस है।

यहाँ पे अ-ए एक कोई होटल है जो ऊपर एैं बोर्ड पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट ।

और मस्जिद के बाहर बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पे अ-म गार्डन टाइप का भी बना हुआ है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए कुछ छोटे पेड़ हैं कुछ बड़े पेड़ हैं।

यहाँ पे बहोत सारा पानी बेह रहा है उपर झरने में से निचे बहोत सारा पानी भरा हुआ है।